मुझे इस फोटो मे सामने एक हो दिखाई दे से--

सामने लोग कैसे इंसान को बैठे हुए दिखाई दे रहे --

मुझे इस फोटो सामने की ओर एक पार्क बना पार्क में बहुत सारे गमले वामले लगे दिखाई देती है पेड़ पौधे पोट लगाए गए सामने की ओर--

हमें एक किरणा की शॉप खुली दिखाई दे रही है। कीरानों की दुकान में काफी सारे स्टेशनरी का सामान वामान टंगा हुआ दिखाई दे रहा हैं। ऊपर सब--

आजू बाजू के साइड सामान वमान डब्बे बॉक्स --

इधर डाल साल लगे हुए दिखाई दे रहीं सामने के ओर साइड मे एक कैमरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में सामने को एक रेलवे स्टेशन बना हुआ दिखाई जिस रेलवे स्टेशन में--

सामने को ऊपर को लगी दिखाई दे रही सामने को कई सारे इंसान खड़े हुए बैठे हुए दिखाई दे--

आजू-बाजू कई सारे हरे-भरे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने को कई सारी ट्रेनें आती जाती हुई दिखाई दे रही हैं सामने की ओर दिखाई दे रही हैं।

यहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और साथ में यहां कुछ लोग खड़े हुए है बाहर बहोत सारी लाइटे लगी हुई है।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

सामने एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक ऐसा इंसान अंदर आते जाते दिखाई दे रहा--